यह एक होटल का दृश्य दिया गया है। यहां दीवार का कलर पिला है।

यह एक घर के बरांडा का फोटो दिया गया है यहां सामने में एक मलाई वाला ठेला लगी हुई है।

और यहां पे ऊपर में एक लाइट भी लगी हुई है।

यह एक मूर्ति का दृश्य दिया गया है यहां यहां मूर्ति के हाथ में एक भी रखी गई है।

जो कि उस पर चादर भी बिछाई गई है और यहां पे दो तकिए भी रखें गए हैं।

और सामने एक लगगी गाड़ कर बोरा रखा गया है। उसमें जो की झलकी बनाया गया है।

और यहां ऊपर में करकट का बनाया गया है।

यह एक पेंट दुकान का दृश्य दिया गया है यहां पे बहुत सारे अलमारी बनाए गए हैं।